यहां बहुत अच्छा घर दिखाई दे रहा--

बहुत सारी लाइटें भी हैं।

और सारी पेड़ी नजर आ रही है।

यहां बहोत सारे गमले रखे हुए हैं।